ये एक ए.टी.एम. है एस.बी.आई. बैंक का और एक ये भईया शायद पैसे निकाल के ला रहे है बाहर के साइड और इन्होंने डा ये ग्रीन कलर की टी-शर्ट पहनी है और --

ओके ओके ओके आंटी जी बोल रही है की मै तो अलग-अलग कूड़ा रखती हूं।

हाँ ये तस्वीर दो हजार उन्नीस में ली गई है और मैं इसे दो हजार तेईस में देख रही हूँ खैर कोई बात नहीं।

ये भी एक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक और इसके बाहर मतलब दुकाने भी है और काफी भीड़ सी भी हो रही यहां पर और एक ऑटो भी है जो जा रही है।

तीन आदमी है जो खडे हुए है एक शायद कोई लेने आया है ।

हाथ जोड़ रखा है कुछ कर रहे शायद गंगा में स्नान आ ऐसा ही लग रहा है देखने में तो काफी भीड़ है वैसे बहोत बड़ा है मतलब।